और ये बहुत ही एक डेवलप जिला है बिहार के --

देखिये भक्त लोग यहाँ पे भीड़ लगी है और यहाँ पे भक्त लोगो बहुत ही दूर-दूर से यहाँ पे आते हैं। पूजा पाठ करते है। फिर यहाँ से जाते हैं की --

कुछ तो मालावाला वो सब वहाँ पे लोग बेचते हैं ताकि उनका भी फायदा हो जाए और हमारा भी फायदा हो जाए | ताकि हम अच्छे से पूजा पाठ कर सके भगवानी की अर्चना लगा सके अर्चना --

एक प्लेन लेंडिंग होने में कम से कम दो से तीन किलोमीटर का जगह स्पेस जो है --